यहां पे एक पुरुष पीला रंग के वस्त्र में दिख रहा है और एक पुरुष काले रंग के वस्त्र में दिख रहा है ।

यहां अगल बगल हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक ट्रैक्टर पर बाबा बैठे हुए भी दिख रहे हैं।

यह तस्वीर यह प्रदर्शित करना चाहता है कि यह जगह किसी शोरूम का है।

यहां की जमीन लाल रंग से रंगी हुई है।

इसके पीछे काले रंग का पर्दा डाला हुआ है।

यहां पर ढेर सारी महिलाएं और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक पंखे भी दिख रहे हैं यहां पे एक पुरुष सफेद रंग के वस्त्र में दिख रहे हैं।

यह तस्वीर यह प्रदर्शित करना चाहता है कि यह जगह किसी कार्यक्रम का लग रहा है।

यहां की साइकले से रोशनियां भी आ रही है।

यहां पे तीन लोहे के रॉड भी दिख रहे हैं।

यह तस्वीर यह प्रदर्शित करना चाहता है कि यह तस्वीर किसी जिम का है।

यह तस्वीरें यह प्रदर्शित करना चाहता है कि यह जगह किसी शोरूम का है जहां पर दो पहिया चार पहिया वाली वाहने दिख रही है।

यह तशवीर यह प्रदर्शित करना चाहता है कि यहां पे जग हो रहा है।